यहां एक पूल बना हुआ है | पूल के नीचे नदी बह रही है नदी में एक आदमी और एक बच्चा खड़ा हुआ है पानी बहुत तेज बह रहा है पर गहरा नहीं है।

यहाँ पर एक खुला मैदान है जिसमे मेला लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा भीड भाड भी हो रही है कुछ औरते आदमी बैठी हुए है कुछ आदमी औरते खड़ी हुए है। और --

वो आदमी ने टीशर्ट नहीं पहनी हुई है बनियान और लोअर में है। नीचे रस्सी दिखाई दे रही है काले रंग की।

सीढ़ियों पर सीढियाँ आधी पानी में डूबी हुई हैं और आधी दिख रही है। आदमी ने सफ़ेद रंग की जैकेट पहनी हुई है। नीचे निचे नीले रंग की पेंट सर पे टोपा लगाया है।

यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे झूले हैं झूले हैं कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़-भार भी हो रही है।

छोटी सब तरह की मछलियां है काली सफ़ेद छोटी चौड़ी मोटी कमजोर --

कुछ अ अफसर काम कर रहे हैं। बहुत सारी फाइले भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर खुले मैदान में एक मेला लग रहा है। जिसमें दरवाजा बहुत सुंदर लग रहा है जो की पीले रंग का है।

इन्होंने अपने नीचे एक-एक कार्पेट बिछा रखा है और तीनो ने एक गुलाबी रंग का एक ने नारंगी रंग का और एक ने लाल रंग का सूट पहन रखा है।

यहाँं पर घाँस का एक हरा-भरा मैदान है जिसमें कुछ लड़कियां बैठकर योगा कर रहीं हैं जिन्होने कुछ अपने ऊपर मास्क लगा रखा है और तिरंगे झंडे का दुपट्टा बना रखा है।

एक कार भी दिख रही है। एक आदमी बाइक पे बैठा है। सामने एक बैंक दिख रही है।

पीले रंग की पट्टी है। एक कुछ यात्री उसमे चढ़े हुए हैं और एक आदमी सड़क पर है। जिसके जो अपनी --

बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं सबके हाथों में किताबें दिख रही हैं। एक सफेद रंग की कार भी रखी हुई है। आजू-बाजू पेड़ दिखाई दे रहे हैं।